और यहाँ पे फंक्शन रखा गया है देख सकते है कैमरा वगैरा लगाया हुआ है और ये स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे काफी सारे बच्चे लोग है और बड़े है सब कोई बैठा हुआ है चलो स्टार्ट करने वाला है।

बहुत ही मजबूती रहता हैं देख सकते है और ये अपना पेट भर रहा हैं कुछ-कुछ खा रहे है देख सकते है।

हम लोग देख सकते है यहाँ पे काफी भीड़ लगा हुआ है और ये जा रहे है अ और यहाँ पे हम लोग मैंगो वगेरा बेच रहे है ठेले पे देख सकते है ये फोर-व्हीलर उधर से आ रहे है उधर

और उधर ट्व-व्हीलर इधर फोर-व्हीलर चारो तरफ छोटा-छोटा प्यारा-प्यारा पेड़ है।

और वो भाईसाहब वहाँ पे खड़े है और देख रहे है।